एवं तस्वीरें दिखाई दे रही है।

लोग दिखाई दे रहे हैं तथा वातन कूलन दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे अधिकोष दिखाई दे रहा है एवं लोग दिखाई दे रहे हैं।

इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

मेज दिखाई दे रही है तथा छात्र भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे एक छत दिखाई दे रही है।

लकड़ी की बनी रैक दिखाई दे रही है।

दृश्य में मुझे अध्यापिका एवम छात्र दिखाई दे रहे हैं।

वातन कूलन दिखाई दे रहा है एवं विद्युत पंखा भी दिखाई दे रहा है।

मेज दिखाई दे रही है एवं लकड़ी से बनी वस्तु दिखाई दे रही है।